लॉजिकल एएमपी ओथर आपरेटर्स के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे लॉजिकल आपरेटर्स पैरालेल असाइनमेंट और रंगे आपरेटर्स यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबन्टु लिनक्स वर्जन 1204 रूबी 193 इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए आपको लिनक्स में टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का ज्ञान होना ज़रूरी है
आपको आईआरबी की जानकारी होना ज़रूरी है
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
लॉजिकल ऑपरेटर्स को बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं
क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन के भागों का मूल्यांकन करते हैं
और ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करते हैं
लॉजिकल आपरेटर्स हैं डबल एम्परसैंड एम्पैम्प जो है डबल पाइप जो है एक्सक्लेमेशन जो है एम्पैम्प और एंड सिर्फ ट्रू का मूल्यांकन करते हैं अगर दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हों
दूसरा एक्सप्रेशन का मूल्यांकन हुआ है अगर पहला ट्रू हो
दो फॉर्म्स मे अंतर है प्रेसिडन्स सिंबॉलिक एंड जो है एम्पैम्प उच्च प्रेसिडन्स रखता है
अब कुछ उदाहरण देखते हैं
हम इसके लिए आईआरबी उपयोग करेंगे
एकसाथ Ctrl Alt और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
इंटरैक्टिव रूबी आरम्भ के लिए टाइप करें आईआरबी और एंटर दबाएं
टाइप करें 3 ग्रेटर दैन 2 स्पेस डबल एम्परसैंड स्पेस 4 लैस दैन 5 एंटर दबाएं
हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
यहाँ एक्सप्रेशन 1 जो है 3जीटी2 ट्रू है
यहाँ एक्सप्रेशन 2जो है 4ल्ट5 भी ट्रू है
चूँकि दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
पिछली कमांड प्राप्त करने के लिए अप एरो की दबाएं
और डबल एम्परसैंड सिंबल को वर्ड एंड से बदलें
एंटर दबाएं
हमें समान परिणाम मिलते हैं
पिछली कमांड प्राप्त करने के लिए फिर से अप एरो की दबाएं
एक्सप्रेशन 1 में ग्रेटर दैन चिन्ह को लैस दैन से बदलें
एंटर दबाएं
हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है
यह है क्योंकि 3ल्ट2 फॉल्स है
चूँकि पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है दूसरा एक्सप्रेशन मूल्यांकित नहीं होगा
अतः हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है
डबल पाइप तथा ओर ट्रू का मूल्यांकन करते हैं अगर कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू है
दूसरा एक्सप्रेशन मूल्यांकित हुआ है अगर पहला फॉल्स है
दो फॉर्म्स मे अंतर है प्रेसिडन्स सिंबॉलिक ओर जो है डबल पाइप उच्च प्रेसिडन्स रखता है
अब कुछ उदाहरणों का प्रयास करते हैं
10 ग्रेटर दैन 6 स्पेस डबल पाइप स्पेस 12लैस दैन 7 एंटर दबाएं
हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
यहाँ एक्सप्रेशन 1 जो है 10 जीटी 6 ट्रू है
चूँकि पहला एक्सप्रेशन ट्रू है दूसरा एक्सप्रेशन मूल्यांकित नहीं होगा
अतः हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
पिछली कमांड प्राप्त करने के लिए अप एरो की दबाएं
एक्सप्रेशन 1 में ग्रेटर दैन चिन्ह को लैस दैन से बदलें
और पाइप सिंबल को वर्ड ओर से बदलें
एंटर दबाएं
यहाँ एक्सप्रेशन 1 जो है 10 ल्ट 6 फॉल्स है
एक्सप्रेशन 2 जो है 12 ल्ट 7 भी फॉल्स है
चूँकि दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स हैं हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है
और नोट ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन की विपरीत वैल्यू रेतुरें करते है
अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो एक्सक्लेमेशन मार्क ऑपरेटर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है
अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा
दो फॉर्म्स मे अंतर है प्रेसिडन्स सिंबॉलिक नोट जो है उच्च प्रेसिडन्स रखता है
अब नोट ऑपरेटर का प्रयास करते हैं
सबसे पहले टाइप करें 10 डबल इक्वल टू 10 एंटर दबाएं
हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
उपरोक्त एक्सप्रेशन के परिणाम को उलटने के लिए एक्सप्रेशन से पहले नोट ऑपरेटर जोड़ें
टाइप करें एक्सक्लेमेशन मार्क ब्रैकेट्स में 10 डबल इक्वल टू 10 एंटर दबाएं
हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है
आईआरबी कंसोल को क्लियर करने के लिए एकसाथ CtrlL दबाएं
आगे पैरालेल असाइनमेंट के बारे में सीखते हैं
पैरालेल असाइनमेंट के द्वारा रूबी कोड की सिंगल लाइन के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स आरम्भ हो सकते हैं
टर्मिनल पर जाएँ
पैरालेल असाइनमेंट उपयोग करके तीन वेरिएबल्स घोषित करें
टाइप करें आ कॉमा ब कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30 और एंटर दबाएं
यहाँ 10 वेरिएबल आ के लिए नियुक्त होगा
20 वेरिएबल ब के लिए नियुक्त होगा
30 वेरिएबल सी के लिए नियुक्त होगा
दायां किनारा अराय की तरह कार्य करेगा
अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को बायीं तरफ सूचीबद्ध करते हैं तो अराय नहीं खुलता है और सम्बंधित वेरिएबल्स को नियुक्त हो जाता है
हम अरेज के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
अभी के लिए जाँच करते हैं कि क्या असाइनमेंट अच्छी तरह हुआ है
टाइप करें आ और एंटर दबाएं
आ में संचित वैल्यू 10 प्रदर्शित होती है
टाइप करें ब और एंटर दबाएं
हमें 20 मिलता है
टाइप करें सी और एंटर दबाएं
30 प्रदर्शित हुआ है
पैरालेल असाइनमेंट दो वेरिएबल्स में संचित वैल्यूज को अदल बदल करने के लिए भी उपयोगी है
अब वेरिएबल्स आ और ब की वैल्यूज को अदल बदल करते हैं
टाइप करें पट्स स्पेस डबल कोट्स में आ इक्वल टू हैश कर्ली ब्रैकेट्स में आ कॉमा डबल कोट्स में ब इक्वल टू हैश कर्ली ब्रैकेट्स में ब एंटर दबाएं
हमे आउटपुट मिलता है आ 10 b20 अब आ और ब को अदल बदल करते हैं
ऐसा करने के लिए टाइप करें
आ कॉमा ब इक्वल टू ब कॉमा आ एंटर दबाएं
पट्स कमांड के लिए अप एरो की दो बार दबाएं और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट मिलता है a20 b10 अब हम रूबी में रंगे के बारे में सीखेंगे
रंगे में वैल्यूज नंबर्स कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं
रेंजेस सीक्वेंस को प्रकट करने के लिए उपयोग होते हैं
सीक्वेंस रंगे क्रमागत वैल्यूज की रेंज बनाने में उपयोगी है
यह रखता है शुरुवाती वैल्यू रेंज की वैल्यूज़ और अंतिम वैल्यू
दो डॉट ऑपरेटर इंक्लूसिव रेंज बनाते हैं
तीन डॉट ऑपरेटर एक्सक्लूसिव रेंज बनाते हैं
रेंजेस यह पता लगाने के लिए उपयोग हुई हैं कि क्या एक वैल्यू किसी विशेष रेंज में भी झुकी है
हम यह करने के लिए इक्वलिटी ऑपरेटर उपयोग करते हैं
अब हम रेंजेस पर कुछ उदाहरणों का प्रयास करते हैं
टर्मिनल पर जाते हैं टाइप करें ब्रैकेट्स में 1 दो डॉट्स 10 फिर डॉट टू अंडरस्कोर आ त्वो डॉट ऑपरेटर इन्क्लूसिव रंगे बनाता है
इन्क्लूसिव आपरेटर रेंज में शुरू और अंत दोनों वैल्यूज सम्मिलित करता है
यहाँ टो a मेथड रंगे को सूची में बदलने के लिए उपयोग होता है
एंटर दबाएं
यहाँ आप देख सकते हैं कि वैल्यूज 1 और 10 रेंज में सम्मिलित हुई हैं
अब हम देखेंगे एक एक्सक्लूसिव रंगे ऑपरेटर
टाइप करें ब्रैकेट्स में 1 थ्री डॉट्स 10 फिर डॉट टू अंडरस्कोर आ थ्री डॉट ऑपरेटर एक्सक्लूसिव रंगे बनाती है
एक्सक्लूसिव रंगे ऑपरेटर सीक्वेंस से अंतिम वैल्यू को निकालता है
एंटर दबाएं
यहाँ अंतिम वैल्यू 10 रेंज में सम्मिलित नहीं हुई है
अब जांचते हैं कि क्या 5 1 से 10 तक की रेंज में है
टाइप करें ब्रैकेट्स में 1 दो डॉट्स 10 तीन बार इक्वल टू और फिर 5 एंटर दबाएं
इक्वालिटी आपरेटर जांचने के लिए उपयोगी है कि क्या वैल्यू रेंज में है
हमें आउटपुट ट्रू मिलता है चूँकि 5 1 से 10 तक की रेंज में है
यह हमें इस स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में लाता है
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा लॉजिकल आपरेटर जो हैं डबल एम्परसैंड डबल पाइप और एक्सक्लेमेशन मार्क आपरेटर्स पैरालेल असाइनमेंट उदाहरण abc102030 रंगे आपरेटर इन्क्लूसिव आपरेटर और एक्सक्लूसिव operator एक नियत कार्य की तरह पैरालेल असाइनमेंट उपयोग करके दो वेरिएबल्स घोषित करना और जाँचें कि क्या उनका सम 20 और 50 के बीच में है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद